यहां सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध है।

ये एक हिरण है यह हिरण यहाँ पे चर रही है यह बोहोत पेड़ है यह हिरण यहाँ खड़ी है।

यह एक मंदिर है यहाँ सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं ।

खंबे को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है यहां बहुत बच्चे हैं।

ये बाजे बहुत बड़े-बड़े है इस --

मूर्ति है। यह मूर्ति प्रतिमा की तरह बनाए गए हैं।

सेलिब्रेशन हो रही है इस जगह को गुब्बारों से सजाए गए हैं।